यहा एक सेट अम्म एक कुर्सियाँ रखी हुई है जिसपर एक आदमी बैठे हुए है मोबाईल रखे हुए--

जैसे यहाँ का मैनेजर से डिस्कस कर रहे हो कांच दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है उसके बाहर भी एक आदमी दिखाई दे --

बीच में एक शटर नजर आ रही है जिसके अंदर बहुत बड़ा समान रखा हुआ हैं बाहर एक टीन सेट भी नजर आ रहा है।

इमेज में एक लेडीज गिटार रखी हुए बजाती हुई नजर आ रही है एक पुंगा बजाते हुए नजर आ रहा है एक आदमी ढोलक बजाते नजर --

इमेज एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है एक लाइट का खम्बा नजर आ रहा है।

बहुत बड़े-बड़े पेड़ है दिखाई दे रहे हैं दो लड़के बराबर चलते हुए नजर आ रहे हैं एक लड़का ग्राउंड में पड़ा हुआ नजर आ रहा है एक उसकी टांग पकड़े हुए नजर --